और यहा बहोत सारा सामान रखा हुआ है पेटिया रखी हुई है डिब्बे रखे हुए है।

पेड़ दिख रहा है और यहा पर कुछ और भी बिल्डिंगे दिख रही है और बिल्डिंग पूरी होने वाली है और यहा पर एक अंकल है।